के दूसरे तरफ कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है।

वो एक पेड़ खुबसुरत लंबी है उसी के पास और साइड में कुछ व्हाइट कलर की चादर से--

ये दृश्य किसी की इंगेजमेंट का है।

जिस पे सारे वर्कर अपने वर्क कर रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर सा लाइट भी दिख--

और इस बिरियानी कॉर्नर के अंदर कुछ व्यक्ति बिरयानी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और इधर लाल कलर की चेयर्स वगैरा भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पे रेड और ब्लू कलर से बैलून से पूरा अंदर डेकोरेशन हो होया हुआ--

और इस पिक्चर में एक छोटी सी झील भी दिखाई दे रही है।

जिस रेस्टोरेंट में बहुत सारी टेबले लगी हुई है और सोफे और चेयर्स भी लगी हुई है।

जिसके तरफ़ कुछ पब्लिक भी दिखा--

और स्टेशन के बाहर बहुत सारी पब्लिक ट्रेन का वेट करती हुई दिखाई दे रही है।

आसपास बहोत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे--

और उस जिम के वॉल पे कुछ आर_ए_सी करके ड्राइंग भी की हुई है।

यह दृश्य किसी पलामू के बजार का है।

ये दृश्य एक यूनिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सेंटर का है।

और उसी के बगल में बिकानों की भुजिया रखी हुई दिखाई दे रही है।